और यहां पर बहुत सारी सूटकेस भी है यहां पर बहुत सारी चौकी भी है।

यह एक बहोत बड़ा गौशाला है यहां पे एक बहुत बड़ा दीवाल है जिसका कलर काला और उजला है।

सामने में एक बहोत बड़ा ए_टी_एम मशीन है यहां पर बहुत सारी मशीने लगाई हुई है।

यहां पर सीढ़ियां भी लगाई हुई है यहां पर बहुत सारे आदमी और है और यहां पर शेटर भी है।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

यहां पर बहोत सारे बंदूके रखी हुई है यहां पर बहुत सारी कुर्सियां हैं।

यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसके गले में एक माला भी है यहां पर उसने टी शर्ट पहना है उजले और भूरे रंग का।

यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिज है इसके ऊपर एक ट्रेन है जिसका कलर ब्लू है और बैगनी है।

एक घर का कलर ब्लू और उजला है उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं खिड़कीओ में बहुत सारे शीशा रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी बिछाई हुई है जिसका कलर ब्लू और लाल है।

ऊपर एक तकिया भी रखा हुआ है जिसका कलर लाल है ।

सामने में एक बहुत बड़ा सेवा केंद्र है यहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ सेवा केंद्र और यहां पर बहुत बड़े-बड़े --

यहां पर अंदर में बहुत सारी रैके हैं जिसमें बहुत सारी दवाई रखी हुई है।

सामने में एक बहुत बड़ा बगीचा है और यहां पर एक बहुत बड़ा कुटिया भी है।

इसके नीचे बहुत सारे फ्लावर पोटें रखी हुई है उसमें बहुत सारी फ्लावरें लगाई हुई है।

यहां पर बहुत सारे घास फूस भी है यहां पर कार भी है जिसका कलर व्हाइट है।

और यहां पर बहुत सारे आदमी भी हैं यहां पर एक झंडा भी है यहां पर बहुत सारी तारें भी हैं यहां पर बहुत सारे खंभे भी हैं।

यह एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें बहुत सारी बैलूने टाँगी हुई है।

यहां पर कुर्सियां और टेबलें रखी हुई है कुर्सियों का कलर काला और पीला है।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

अमने में एक बहोत बड़ा रूम है जिसमें एक बहोत बड़ा गणेश भगवान का मुंह है।

यहां पर एक बहोत बड़ा कारपेट है जिसका कलर लाल है और यहां पर बहोत सारे आदमी और है।

और एक आदमी ने हाथ में पाइप धारा हुआ है यहां पर बहुत सारे कपड़े भी टंगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है एक आदमी ने नीले रंग का शट पहना हुआ है।

यहां पर बहुत सारी टाइलसें लगी हुई हैं यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

और यहां पर एक कार भी खड़ा है जिसका कलर ऑरेंज है।

और यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस भी हैं यहां पर बहुत बड़ा गेट है जिसका कलर काला है।

और उसके बाहर लिखा हुआ है गुरुकुल--

और यहां पर बहुत सारी कारपेटें है बहोत सारे लाइटें हैं नीचे में।

यहां पर डिवाइडर भी है जिसका कलर पिला और काला--

यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहां पर बहुत सारे मिट्टी और बालू फेंकी हुई है यहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर भी फेके हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं यहां पर बहोत बड़े बड़े पाइप भी हैं।

यहां पर बहुत सारे आदमी और औरतें भी हैं यहां पर बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियां भी हैं।